यह बांग्ला है जो ब बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और इसके आस पास जाली घेरे हुवे है जो बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है।

और ये बहुत सुन्दर है यहाँ खेती बुआ है जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है फसल उगा है और ये बहुत सुन्दर है और ये बहुत अच्छा है और ये बहुत हरा - भरा दिख रहा है बहुत सुन्दर हैं।